यहाँ पर सामने में एक बेड दिख रहा है जहाँ पर कुछ-कुछ सामने रखे हुई हैं जो तांबे की समान होती हैं जो --

अं कुछ झूला झूल रहे है और कुछ सिसो टाइप का खेल रहे है कुछ बच्चे यहा पर बैठे हुएं हैं।

मेकअप करने वाला है शायद यहां पर एक अ और प्लेन दिख रहा है एक अ ये दूसरे का कंपनी का प्लेन है यहां पर--

धान लगाया जा रहा है बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर --

और कुछ-कुछ वायर ये सब आपको देखने को मिल जाएगा।

और यहाँ पर एक लेपटोप रखा हुआ है तो बेसिकली एक छोटा सा स्टुट टाइप का है।

सामने में यहाँ एक अ मंदिर का जो गेट है वो दिख रहा है और बहोत ही सुंदर यह मंदिर का जो गेट है वो बनाया गया है।

और यहाँ पर कुछ कुछ नारियल के पेड़ यह सब लगाये हुए है और यहाँ पर एक बोर्ड लिखा हुआ है।

अ और सामने में एक रेस्टोरेंट टाइप का एक कुछ दिख रहा है।

यहाँ पर यहाँ फुल लगाये गय है यह कुछ पर्पल और वाईट में फुल दिख रहे है जोकि खिले हुए है।

पुने बेगलोर दिल्ली अ मुम्बई कोलकाता अ का आपको यह मिल जाऐगा फ्रॉम भुवनेश्वर।

ये एक अह बड़ा सा व्हाइट कलर का बिल्डिंग दिख रहा है और उसके सामने एक बड़ा सा बास्केटबॉल का जो ग्राउंड होता है अह वो दिख रहा है और ये शाम का --

अ बिल्डिंग टाइप का है यहाँ पर--

कुछ कुछ का यहाँ पर स्टाछु टाइप का बना हुआ है।

और उस अ इस स्टाछु के उपर कुछ बच्चे को बिठाया जा रहा है।

सामने में एक रोड दिख रहा है अ जोकि कच्चा रोड है मतलब--

सामने में यहाँ पर एक ऑफिस एरिया टाइप का है यहाँ पर कुछ सिटी अरेंजमेंट है एक काउन्टर टाइप का है।

यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर जो चट्टान टाइप के है वो दिख रहे है और यहाँ पर--

च लाल और एक वाईट कलर का झंडा भी दिख रहा है।

कोई चीज का पूजा था शायद तो उस हिसाब से सझाया गया है।

शू पहना हुआ है तो शायद ये लेक को देखने के लिए आया है लेक की तरफ जो फेस है वो करके खड़ा है।

री सिक्सटी फेमली सलोन का एक यहाँ पर यह दिख रहा है एक काउन्टर टाइप का बना हुआ है।

अ सामने में एक अलमारी टाइप का है जहाँ पर कुछ कुछ अ जो कोस्मेटिक सबका सामान दिख रहा है।

पर एक लड़का खड़ा है जोकि एक जेकेट पहना हुआ है एक पेंट में और एक सु पहना हुआ है और सन ग्लास लगाया हुआ है।

अ पीछे एक द सिटी केफे अ के आगे खड़ा है।

यह घर अभी बन रहा है मतलब कन्ट्रकशं चल रहा है इसका--

अ सामान मतलब चारो तरफ घास से घिरा हुआ है और यह इटा वाईट है जो इटा है उसका बना हुआ है।

अ इसका असिस्टेंड राजनिल टास्फोर्ट ऑफिस यह का--

यहाँ सामने में एक रोड दिख रहा है और सामने में गेट दिख रहा है जहाँ से गाड़ी आना जाना कर रही है।

और कुछ कुछ यारी पाल्क है और आस पास में कुछ पेड़ दिख रहे है कुछ एक ओरेंज कलर का जो अ फ्लावर का पेड़ है जो दिख रहा है बहोत ही सुंदर है।

सामने में यहाँ पर कुछ कुछ मंदिरे दिख रही है अ अ रात का व्यू है और--

इस टू वीलर और उसका एक अ शोवरूम समझ में आ रहा है।

अलमारी टाइप का बोल सकते है अ जहाँ पर कुछ कुछ सामान यहाँ पर सजाकर रखा गया है।

आ जो कुछ कुछ दूकान है वो दिख रहा है और--

बड़ा बड़ा सा बिल्डिंग दिख रही है यहाँ पर कुछ बड़ा बड़ा सा बिल्डिंग यहाँ पर है।

यहाँ सामने में भालू दिख रहा है भालू पर कुछ कुछ जो लोग है।

यह वाल है उसपे रिजल्ट और क्सस्युज योआर चोइस लिखा हुआ है।

और यहाँ पर कुछ कुछ जो जिम की मशीन होती है वो है यहाँ पर--

अ जहाँ पर अभी ढलाई का जो काम है वो होने वाला है।

हेलाई से पहले जो रोड बना जाता है यहाँ पर एक दो आदमी दिख रहे है जोकि काम कर रहे है।

यहाँ पर एक सी_के जो साइड का है वो भी दिख रहा है।

और सामने में एक बड़ा सा सी दिख रहा है और --

बालू दिख रहा है सामने में बालू बालू और कुछ कुछ ऐसे ही अ सूखे हैजो पेड़ है वो सब दिख रहे है।

और थोडा सा आसमान बारिश जैसा होके रखा है।

पंचायत सोनपुर आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। ये इसका एक बोर्ड बना हुआ है और आसपास में पजाल लगे हुए लोगों का भीड देख रहा है यहां पर।

यह बड़ा सा एक अ डेम बोल सकते है बड़ा सा डेम है चारो तरफ पानी ही पानी दिख रहा है और बिच में एक ब्रिज बना हुआ है।

यहाँ पर कुछ कुछ दुकाने है जैसे की कमप्यूटर एप्लीकेशन सेंटर दिख रहा है और ऐसे ही कुछ कुछ दुकाने यहाँ पर है और आस पास में--

सामने में एक घर दिख रहा है जहाँ पर कुछ सीढियाँ दिख रही है घर के और जाते हुए और--

अ कलर्स दिख रहा है एक और केले के पत्ते दिख रहे सायद यहाँ पर--

यहाँ पर एक पीछे में डेम दिख रहा है और डेम में पानी छोड़ा जा रहा है जो डेम का गेट होता है उसको खोला गया है पानी दिख रहा है।

यहाँ पर दो आद एक आदमी और एक लेडी दिख रही है जोकि सायद फोटो क्लिक करवा रही है अपना--

ट्रेवलर गाड़ी मतलब इसमें अ लोग बहोत दूर दूर तक--

ट्रेवल करते है अ थोडा बेन टाइप का है उस टाइप का गाड़ी है यह--

और यह चोकलेट बिस्कुट और और ऐसे छोटे मोटे जो सामान होते है।

और बड़ा सा अक लॉट्स टाइप का बना हुआ है तो यह कोई फाउन्टेन टाइप का बना हुआ है।

अ एक मंदिर टाइप का है जोकि अभी बंद है और उसके सामने यहाँ पर एक ओरेंज कलर का गाड़ी दिख रहा है स्कार्पियो का--

सामने में यहाँ पर एक भुवनेश्वर का एक बड़ा सा बोर्ड दिख रहा है तो यह सायद भुवनेश्वर का रेलवे स्टेशन हो सकता है।

अ वेटिंग एरिया टाइप का दिख रहा है सायद जो बस स्टेंड होते है वहां पर जो वेटिंग एरिया टाइप बनाया जाता है वो दिख रहा है।

सामने से पूरा शहर दिख रहा है एक पहाड़ टाइप का दिख रहा है एक रोड अ जो है जाते हुए दिख रहा है।

अ रोड के आ आसपास बहोत सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं मतलब बहोत ही एक खूबसूरत सा एक नजरा बोल सकते हैं।